यह एक जो फोटो दिखाई दे रहा है वह दो स्टेचू बैठ एक बैठा हुआ है एक खड़ा हुआ है। --

इस स्टैचू बैठे हुए स्टैचू के द्वारा तोप को कंट्रोल किए जाने का बता रहे हैं।

जोकि खिसकाने का यूस किया जाता --

यह जो आपको शॉप दिख रही है। वह शॉप एक कर्टन की शॉप है जिसमें हर तरह के--

डिज़ाइन डिज़ाइनदार कर्टन मिल रहे हैं और हर प्राइस की कर्टन मिल रहे हैं आपको। लो प्राइस से लेके --

उस बिल्डिंग के बाज़ू से ऊंचे - ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें पर्पल कलर का आस पर्पल और ग्रे कलर का आसमान दिख रहा है। एक घर दिख रहा है। --